इ रोड ह| का जाने कवना ईटा से बनावल बा पेड़ बा आदमी आवत जात बा| पतई झरल बा

मोरे के ओर पुतला लागल बा फु --

दु आदमी बनाव तन लोग। दुगो घर बा। गिट्टी बालू ईटा बा। पूरा ईथी माटी से भी बा। औरी एमे --